सामने दुकानें लगी हुई है लाइटे जली हुई है दुकानों के बाहर बहोत बड़े बड़े पेड़ है।

और आगे कुछ पानी इकठ्ठा हो रखा है पीछे दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है।

कुछ साइकील है साइकिल के पास एक बार मोटरसाइकिल है।

यहां सामने खिड़कियाँ दरवाजे लगे हुए है लोहे के।

पीछे बहोत सारे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं पत्थरों में एक बहोत बड़ा पेड़ है।

और कुर्सियां लगी हुई हैं कुर्सियां ब्लैक कलर की हैं।

एक मोटरसाइकिल खडी क खड़ी है एक मंदिर बना है।